यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसकी दीवार का कलर हरा और सफ़ेद यहाँ पे शटर भी दिखाई दे--

यहाँ पे कुछ पोस्ट भी दिखाई दे रहे हैं और आपके कांच का गेट भी दिखाई दे रहा है।

और आसमान भी दिखाई दे रहा नीचे जमीन भी दिखाई दे रही।

दिखाई दे रहा है कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं।